यह एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चों को योगा कराया जा रहा है।

यह रेलवे लाइन का वह दृश्य है जिसे हमलोग रेगुलर यूज करते है।